और उंका का चारों तरफ जु अलमारी बड़ी लाखड़ों की उं पर किताबि छन धरी अर उं अलमारियों का एंच बिटिन भी किताबन धरी।